और यहाँ पे स्टूल रखे हुए है।

और ये पेड़ लगे हुए है आसमान दिखाई दे र --

यहाँ पे बहुत सारा पानी भरा है एक नदी है।

यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है।

डलिये में बहोत सारे सामान रखे है।

और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए है।

उसपे लिखा है विद्या बुकस स्टैनरी ।

हुआ है जिसमे कुछ लिखा हुआ है।

कटोरे रखे हुए हैं गंजी रखी हुई है।

यहाँ पे एक शो रूम टाइप का दिखाई दे रहा है।